बाहर बैंक के गाड़ियाँ रखी हैं कुछ लोग हैं अँधेरा है आस-पास बहुत --

हिरन बहुत ज्यादा संख्या में है हिरन अ नीचे जमीन है जमीन में हरी-हरी घास हैं जिसे वह खा रहे हैं।

इस दिवार पे फ्लावर पॉट रखे है बहुत सारे जो अलग-अलग रंगों के है।

नीचे जो लोग है वह स्टेज पे खड़े लोगो की फोटो ले रहे है।

मैदान है बीच में भी मैदान है ऊपर छत है छत पर एक पेड़ दिख रहा है छत --

और कुर्सियों पे बहुत से लोग बैठे है।